एक चिड़िया उड़ते हुए जा रही है। एक मुंडी नीचे करे है और पीछे दुँधला आसमान है और ग्रे कलर का दिख रहा --

और एक ट्रक खड़ा हुआ है। हरे कलर का खम्बे बगैरह भी बोहोत सारे लगे हैं।

सामने उम्म बोहोत सारा पानी है नदी है और साइड में सूखे पेड़ लगे हैं। घास मिट्टी सब पड़ी हुई है। पेड़ --

एक ओम का साइन भी बना हुआ है। नीचे चैनल लगा है। दो शटर बंद भी रखे हैं।

सामने बोहोत सारे फव्वारे हैं। उसमें लाइट भी लगी हैं। अगल-बगल में टाइल्स हैं चौकोर-चौकोर हैं।

ऊपर एक छज्जा भी बना हुआ है. दीवाल में पेंटिंग भी है बहोत बणिया।

तीन चार कुर्सिया हैं लोहे की एक आदमी बात कर रहा है अंदर एक आदमी है शीशा लगा है। दो तीन शटर भी लगे हुए हैं।

और खंभे भी लगे हैं नीले कलर के। बहुत सारी पीछे बोरियां रखी हुई हैं और --

लाइट भी आ रही है। नीचे लाल कलर का कारपेट भी लगा हुआ है और पीछे दवाल क्रीम क्-रंग की पेंट --

सामने एक ऑफिस है कंप्यूटर रखें है पेन रखे है स्टैपलर है।

मै सब फूलो को पेड़ बगेरा भी हैं।

सामने एक पैथोलॉजी का रूम है ब्लैक कलर का उसमे --

सामने ड्राई क्लीनर्स करके एक स्टोर है। पंखा लगा हुआ है बोर्ड है।

और पंखे वगेरा भी हैं और पेर वगेरा हैं और पीछे एक बड़ा सा पेड़ है तीन लगी हुए है उसमें खम्बे भी हैं।

सामने एक दरवाजा लगा है ऊपर खिड़की में शीशे लगे है और एक अलमीरा है बहुत गन्दी सी एक अलमीरा है पीछे --

एक डंडी है। उसपे बैठे हैं सुखी सी और जाली लगी हुई है बाहर और ऊपर हरे कलर की टिन है।

सामने एक फंक्शन है। बोहोत सारी कुर्सिया रखी हैं। टेबल बिछी है। ग्रीन कलर के मैट हैं।

थोड़ा बोहोत कूड़ा भी पड़ा हैं काला-कला है पूरे जंगल मे और हरा-हरे पेड़ है और बीच में बड़ी सी लकड़ी भी है उसमे नीचे तीन डंडी लगी हुई हैं।

सामने एक सुखा पेड़ है। थोड़ी बोहोत हरी पत्तियां हैं। अ नीचे बहुत सारे कूड़े पड़े हुए हैं और एक आदमी बैठा है गेट के पास।

सामने एक नीले कलर का फ्रेम है बहुत सारे अंदर सामन रखे हैं पुराने ज़माने के मूर्ति वगैरह हैं।

और जिम के पोस्टर भी है बड़ा सा जिम है टाइल्स बगैरह भी नीचे लगे है और ऊपर वाइट लाइट भी जल रही है एक आदमी भी खड़ा हुआ है साइड --

सामने एक लड़का खड़ा है यह कपड़ा ओढे है मैंडल पहने हुए है और स्कूल की टाई लगाए है नीचे एक छोटा लड़का भी है पीछे से --

सम्मन बहुत सारे स्क्रू टाइप के पड़े हुए है लोहे के सामान पट्टी बगैरह पड़ी है मिट्टी है नीचे बहुत सारी --

सामने एक बड़ी सी फैक्ट्री है और उसमे बहुत सारी अलग-अलग तरीके की मशीन हैं बड़े-बड़ी बटन लगें है ऊपर वाइटे लाइट जली हैं।

इसमे बहौत बड़ी सी नदी है और बहौत सारे किनारे ईटें वगैरह पड़े मिट्टी बहौत सी है कूड़े वगैरह पड़े हैं दिल्ली --

बहोत सारी ईटें वगेरा भी है बहु सूखी सूखी पत्तियां भी हैं धूप की रौशनी भी आ रही है।